इसके बाल छोटे है और इसने जैकेट और शर्ट पहने है | शर्ट ब्लू कलर की है | पीछे बहुत सारे पेड़ है और यहा पे कुछ उगा हुआ भी है ।

उसके ऊपर चो चो बनीं हुई है और यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए है चेयर पे |

यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ है पिंक शर्ट ब्लू जींस और स्लीपर पहने हुए है और हाथ में वाच पहनी हुई है।

ये एक ऑफिस हैं और इसके अंदर कुछ आदमी बैठे हुए हैं चेयर्स पे और स्टूल लगा हुआ है यहाँ पे वाइट कलर की चेयर है।

ये एक जिम है जिसमें काफी सारे लड़के आए हुए है जिम जॉइन करने के लिए। कुछ एक्सरसाइज कर रहे है और दो है जो है अपनी पिक ले रहे हैं।

ये एक बैंक है। बैंक का नाम केनरा बैंक और इस के ऊपर सेंडीकैट ये सेंडीकैट बैंक और यहाँ पे बहुत सारी बाइक यहाँ पे तीन बाइके हैं।

ये एक ए.टी.एम. है जो न्यू खुला है। यूनियन बैंक लिखा हुआ है इसपे और इसपे फूल मालाएं है जो ओरेंज कलर की है। यहाँ पे

ये एक मच्छी बाजार है। जहाँ पे बहुत सारी मछिया बिक मछलियां बिकती है। यहाँ पे कुछ लोग बेच रहे है और कुछ लोग खरीद रहे हैं और यहाँ पे मकान भी है। यहाँ पे बहुत सारी मछलिया बिकती --

जो ब्लैक टीशर्ट और ब्लू जीन्स में है और ब्लैक कैप में बैग भी टांगा हुआ है इसने और यहाँ पर कुछ लोग बैठे है।

ये एक मार्केट है जहाँ पे काफी सारे स स्कूटर बाइक साइकिल ऑटोरिक्शा सब हैं।

एक आदमी यहाँ पे बैठा है जो अपने बाल कट करवा रहा है और एक आदमी इस इनके बाल कट कर रहा है और इन्होंने ब्लू कलर का पह --

इसमें लिखा है मैं घर पर भी इस कूड़े को अलग- अलग करके रखती --

यह एक रोड है जहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने सवार अपनी -अपनी सवारी से जा रहे है और येलो कलर के यहाँ का डिवाइडर है।